जल शक्ति अभिमान जल बचाओ जीवन बचाओ का --

दो व्यक्ति अन्दर ए.टी.एम. के हैं।

सामने इमारत एवं एक हॉल दिख रहा है। उसमें बरामदा है।

फूल लगे हुए है। कुछ लोग फूल तोड़ रहे है।

वह स्स रामायण कलेंडर --

गुलदस्ते गमले बनाए हुए बोत --

लोगों को यात्राएं सुविधा में उपलब्ध --

स्मोकिंग का कटा हुआ लोगो दिख रहा है। वह उसमें --

इस चित्र में सामने भारत पेट्रोलियम --

इस चित्र में एक नदी --